बाहर का एक कोशिकीय ऑफिसर है जो खड़ा है उसके पीछे हम --

हां हॉर्लिक्स सब कुछ सेरेलैक सब कुछ मिल सकता है ये दुकान --

इधर कई-कई वायरे भी मौजूद है और --

बारिश पड़कर पुरा चिकड़ हो चूका है और यहाँ पर हरी --

आप प्राइवेट इंस्टीटूशन है ट्रेनिंग इंस्टीटूशन है।

और इधर हम ये देख सकते है ये झाड़ों के बिच में ये --